पूजा में भी हम यूज कर सकते हैं उन फलों को और हमें खाने भी चाहिए बहुत अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं उनसे हमें एनर्जी और--